रोड के दूसरे पार एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है और दो मंजिला देखने मे यह कोई ढाबा लग रहा है इसके सामने कुछ लोग भी खड़े हुए नज़र आ रहे है बगल मे नीली और हरे रंग की पन्नी लगी हुई दिखाई दे रही है।

साइकिल हर साइज की खड़ी हुई नज़र आ रही है जिनमे से कुछ बच्चो की साइकिलें और कुछ बड़ो की सायकिलें भी दिख रही है अंदर की तरफ छोटे बड़े कई सारे टायर भी जमे हुए नज़र आ रहे है।

काम्प्लेक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बड़ी सी साइकिल की दुकान खुली हुई है और बगल मे एक चित्रकालय खुला हुआ नज़र आ रहा है।

ऊपर की तरफ घर बने है और ऊपर एक साइकिल की एजेंसी भी खुली हुई दिखाई दे रही है नीचे बाहर कई सारी साइकिल रखी हुई जिनमें से छोटी बड़ी हर साइज की साइकिल उपलब्ध दिख रही है दुकान पर एक बड़ा-सा बैनर भी लगा है।

इसी बड़े से कमरे के अंदर एक सर्विस सेंटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है तीन चार बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है और एक पिलाई से छोटा कमरा बनाया गया जहाँ पर और कुछ बाइक खड़ी वी दिखाई दे रही है वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है।

एक बड़ा -सा शोरूम दिखाए दे रहा है जोकि कार शोरूम है इसके ऊपर बड़े- बड़े अक्षरों में इंग्लिश लेटर में इसका नाम लिखा हुआ है और बगल में इसका लोगो भी बना हुआ हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा कमरा दिख रहा है जिसमें नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है यहाँ पर लाइन से फोर व्हीलर खड़ी हुई है जिन में से एक ग्रे कलर की एक वाइट और एक ब्लैक कलर के दिखाई दे रही है।

एक और बड़ी कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है बीच में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे है जो कि एक टेबल चेयर पर बैठे हुए नज़र आ रहे है बाहर कांच के ग्लास लगे हुए दिख रहे है।

एक बाजार दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक आदमी कुछ मछलियों को बेचता हुआ नज़र आ रहा है बगल में एक और आदमी दिखाई दे रहा है जो जमीन में बिछा पन्नी बिछाकर कुछ जलीय जीव बेचता हुआ नज़र आ रहा है।

देखने मे यह बिल्कुल नई लग रही है यह किसी बाइक शोरूम का गोडाउन लगरहा है जिस मे पीछे की तरफ एक ऊँची सी बाउंड्री वाल उठी हुई है और दूसरी तरफ पेड़ लगे--

यहाँ पर एक चौड़ी सी रोड दिखाई दे रही है जिसके बगल मे एक पीला सा घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर तीन द्वार बने हुए है जिस--

यहाँ पर एक बड़ा-सा बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर रेड कलर का बोर्ड लगा है इसके बीचो बीच इस बाइक का लोगो लगा हुआ है और दोनों तीर किनारो तरफ इसका नाम लिखा है।

ऊपर एक और बड़ा रेड बोर्ड लगा हुआ है जिस पर काफी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस शोरूम के बहार कई सारी बाइक और स्कूटी खड़ी हुई नज़र आ रही है सामने रोड दिख रही है जो की काफी चौड़ी बनी हुई है।